दिखाई दे रहे है कुछ पत्ते लगे हुए है ये बत्तख की चोंच लाल है और यहां पानी भी भरा हुआ है--

और सामने कुछ बोतल दिखाई दे फ्रिज के अंदर माजा है स्प्राइट की और यहाँ पे कुछ बिस्किट भी रखे हुए हैं सामने --

बतख दिखाई दे रही है जिसकी चोंच पीले कलर की है और हाथ भी पैर भी पीले कलर के इसके नाखून भी बड़े-बड़े हैं यह काले कलर का दिखाइ पड़ रहा है और इसकी आंख काले कलर के दिखाई दे रही है।

एक रोड गयो है यहाँ पे एक बाइक खड़ी है यहाँ पे ऊपर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं ये सीधा रोड गया है यहाँ पे अगल-बगल छोटे-छोटे घास भी दिखाई दे रहे हैं।